यह तस्वीर एक गाड़ी के अंदर से खींचा गया है।

बहोत सारे बदल भी छाए हुए हैं।

और मुझे पीछे तरफ भी बहोत सारे लोग भी दिख रहे--

दो पहाड़ों के बीच पर बहुत सारे बिल्डिंग नजर आ रहे हैं।

मुझे यहां पर एक फुटबॉल भी दिख रहा है।

और दूर से देखने को मुझे एक टावर भी नजर आ रही।

यह एक बड़ा घर दिख रहा है।

इसमें हरे रंग की फिल्ड नजर आ रही है।

हर एक फूल को अलग अलग जगह पर रखे गए हैं।

और मुझे ढेर सारे पौधे भी नजर आ रहे हैं।

और मुझे एक छोटी सी गाड़ी भी नजर आ रही--

और पीछे तरफ एक बड़ा सा पहाड़ भी दिख रहा है।

और एक पुरुस खरे होकर इन सबको कुछ बता रहे हैं।

ये सब चेयर पे बैठे हुए हैं और टेबल में बहुत सारी किताबें रखे गए हैं।

यहां पे मुझे चार इंसान दिख रहे है।

के ऊपर इनका दाम भी लिखा गया है।

रोशनी देने को ऊपर पर।

तस्वीर के आगे एक लाल कारपेट बिछाया गया है।

पीछे भी मुझे एक छोटा सा हट भी दिख रहा है।